एक बच्चा एक मशीन के ऊपर खड़ा हुआ है जिसने ग्रे कलर की शॉर्ट्स पेहनी है और ब्लू कलर की टी शर्ट ।

और उससे भी दूर थोड़ा सा पहाड़ और बहुत सारे हरे रंग के पेड़ है।

इसमें बहुत सारी गाड़ियां भी खड़ी है जिनके ऊपर भी बर्फ है।

आसमान का रंग इस पे नीला है।

फोटो में बीसीएस न्यू शिमला भी लिखा हुआ है।

और यहां पे एक बोर्ड है जिसमें स्मार्ट किड्स लिखा हुआ हैं। बाहर चार पांच लोग खड़े हुए हैं।

दूसरी क्रीम कलर की बिल्डिंग है और उसकी छत भी लाल है।

और इसपे कुछ लोग भी खड़े हुए हैं।

यह फोटो किसी स्कूल की है जहां पे--

जिस पे तीन लोग काम कर रहे है

और उसके ऊपर एक बर्तन भी है।

और सीलिंग सीलिंग लाइट भी लगी हुई है और ब्राउन कलर से डिजाइन भी किया गया--

और एक बच्ची भी है जिसने ब्लू कलर की टी-शर्ट पहनी हुई है जो अपने मम्मी की गोद में है।